में ऊपर एक नीले और नारंगी रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है। कलर की बाल्टियाँ रखी हुई हैं। शटर दिखाई दे रहा है जो कि भूरा है।

यहाँ एक मैंरिज गार्डन दिखाई दे रहा है जोकि सुन्दर फूलो और पर्दो से सजा हुआ नजर आ रहा है।

कुर्सियाँ रखी हुई है जोकि लोहे की है उनका रंग सफेद नजर आ रहा है। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक हाल दिखाई दे रहा है। जिसमें सफेद रंग की दीवारें नजर आ रही है। नीचे जमीन दिखाई दे रही है। जमीन का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक लेडिस दिखाई दे रही है जो कि मछलियां बेचती हुई नजर आ रही है। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है काले रंग का एक जैकेट --

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है। जिसका रंग पीला और हरा नजर आ रहा है। इसमें सिमेन्ट के --

यहाँ एक पिज़्जा शॉप दिखाई दे रही है जहां पर बगल में एक लोहे का बड़ा गेट नजर आ रहा है जिसका रँग --

पीछे एक हरा रंग का पेड़ नजर आ रहा है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान का रंग सफेद है।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

यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है जोकि नदी के पास बैठा हुआ है नदी में पानी दिखाई दे रहा है। पानी का रंग नीला नजर --

का रंग पीला दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है जोकि सफेद रंग का हैं।